इस तस्वीर को देख के पता चल रहा है की यहाँ यह शहर का है इससे साफ पता चलता है की यहाँ पस शहर का है।

बहुत लोहे का उपयोग हो रहा है उसके ठीक पीछे में बहुत सारे सीमेंट और बालू भी हैं जो कि बहुत सारे व्यक्ति उसे ले जा रहे हैं और उसमें दो --

और इसका फुल नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसके ठीक आगे में एक बहुत बड़ा पैड़ है जो कि बहुत बड़ा है इसके ठीक पीछे में बहुत सारे दुकान है जो कि छोटे बड़े --

यह तस्वीर देखकर लग रहा है कि यह बहुत बड़ा दुकान होगा पुस्तकों का --

पेड़ को देखकर लग रहा है यह नींदगिरी का होगा और इसके ठीक ऊपर में एक ब्रिज बनाया गया है जो कि पानी से --